इस इमेज में सामने यहां पर एक गेट दिखाई दे रहा है जहां पर पोस्टर लगे नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में सामने यहां पर कुछ बच्चे खो खो खेल रहे हैं।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

यहां पर कुछ लोग सामने नज़र आ रहे है और यहां पर --

जहां पर कुछ बच्चे परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं सामने यहां बैनर भी लगा दिखाई दे रहा है।

जहां पर मूर्ति रखी नजर आ रही है सामने यहां पर लाइट्स भी जलती दिखाई दे रही है।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

यहां पर सामने पेड़ लगे नजर आ रहे है और यहां पर बाउंड्री भी बनी दिखाई दे रही है।

इस इमेज में सामने यहां पर स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ लोग नहाते हुए नजर आ रहे हैं।